अ हमे जो काम व् वर्कर्स रहते है वो काम करते हुए और --

हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पर हमें इस पिक्चर में एक्सरसाइज के वेरियस इक्विपमेंट --

यहाँ पर लाइट्स भी लगे हुए हैं यह उम्म बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा --

जिसमें अ बाजू में गार्डन लगे गार्डन हैं गार्डन में विभिन्न प्रकार के पुष्प भी खिले हुए हैं जैसे--

अ जो उम्म स्टेडियम ग्राउंड जैसा लग दृश्य लग रहा है ।

जैसे पेन बॉक्स पेन्सिलस फेविकोल --

विभिन्न प्रकार की दुकानें दिखाई दे रही है जैसे एक फल की दुकान है जिसमें केला केले --

आ ये जिसमें इस बोर्ड के ऊपर विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम के पिक्चर बने हुए हैं साथ में --

साथ में ही नीचे एक दूसरा बोर्ड लगा है जिसमे दिव्या आइस क्रीम जूस पार्लर के नाम से भी लिखा हुआ है।

किसी लॉन जैसे दिखाई दे रहा है जहाँ हरी हरी घास है साथ में --

चित्र में दिखाई देने वाला दृश्य एक पेट्रोल पंप का है।

अ इस में हमें एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है साथ में ही कुछ विद्या--

जो अपनी फोटो लेते हुए दिखाई दे रही है साथ में ही हमें इसमें--

लगता है यह पक्षी बदक जैसा दिखाई दे रहा है।

आआ इस में कुछ काँच की ग्लासेज रखी हुई हैं अ--

में यह दृश्य किसी आआआआ नेशनल अअअ फेस्टिवल की परेड का द्रश्य दिखाई दे रहा रहा है जहाँ हमें ---

जिसमें अ हमें ये जो दृश्य दिख इसमें विभिन्न प्रकार के लाइट्स लगे हुए हैं साथ में दरबार अ खड़े हुए हैं।

जैसे अलग अलग रंग बिरंगे पीला लाल सफेद उम फूल दिखाई पीले लाल सफेद फूल दिखाई दे रहे हैं।

साथ मे ही मां मां दुर्गा का छाया चित्र दिखाई दे रहा है।

आई थिंक ये मेडिकल फिल्ड में यूज़ होने वाली मशीने है--

चित्र में हमें एक किचन ज जेसा कुछ द्रश्य दिखाई दे रहा है रसोई घर है।

का स्टॅन्ड है साथ में वहां पर जो यह किचन है यह मोडूलेटेड मोडुलर किचन है।

चीजें पकडी है यह एक गोंधड़ जैसा कोई नृत्य लग रहा है।